एक ड्रोन कैमरा दिखाई दे रहा है पींछे हम लोग पर्दे पर फूलों की डेकोरेशन करी दिखाई दे रही है। यहाँ पे फूलों का रंग हमें सफेद पीला व लाल दिखाई दे रहा है यहां पर हमें पत्ते भी लगाए दिखाई दे रहे हैं।

यहाँ पर फेविकोल के डब्बे दिखाई दे रही है थैली दिखाई दे रही है। यहाँ पर हमे पीछे दीवार दिखाई दे रही है। दीवार का रंग हमे लाल अ सफेद और ब्लू रंग का दिखाई दे रहा है। बड़ी सी खिड़की दिखाई दे रही है पीछे हमें।

यहां पर हमें गमला दिखाई दे रहा है गमला हमें पर्पल रंग का दिखाई दे रहा है यंहा पे हमें टीचर्स भी दिखाई दे रही है। यहां पे हमें बड़े-बड़े गमले के ऊपर पत्ते भी लगे दिखाई दे रहे हैं हरे-हरे कलर के।

यहाँ पर इनके बच्चे काफी छोटे-छोटे दिखाई दे रहे हैं। इन लोगो ने मास्क पहने लगा दिखाई दे रहे है यहाँ पर हमें किताब दिखाई दे रही है।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

इन लोगो ने सफ़ेद साड़ी पहने दिखाई दे रही है गले मे चर्च के लॉकेट पहने दिखाई दे रहे हैं। यहाँ एक चर्च में रह्ती हैं महिलाये यहाँ पर हमे पीछे पत्थर दिखाई दे रहे हैं यहाँ खुला आसमान दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर हमें बिल्डिंग दिखाई दे रही --

दूसरी बिल्डिंग दिखाई दे रही है। यहां पर हमें एक टीचर दिखाई दे रही है जिसने वाइट ड्रेस पहनी देखाई दे रही है गले में चर्च का लाकिट डाले दिखाई दे रही है यहां पर हमें --

तस्वीर में हम देख सकते हैं। यहाँ पर कुछ स्कूल के बच्चे दिखाई दे रहे हैं जोकि ड्राइंग दिखाते दिखाई दे रहे हैं।

तस्वीर हम देख सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे दिखाई दे रहे हैं जोकि फर्श पे बैठे दिखाई दे रहे हैं जोकि कुछ ड्राइंग बनाते दिखाई दे रहे --